जिसके ऊपर पिन्नी डली हुई है कुछ लकड़ी रखी हुई है उसके बराबर में--

कुछ मालाएं फूलों की कुछ झूमर टंगे हुए हैं रेड कलर की है पिंक कलर की है।